इस फ़ोटो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि सामने लिखा हुआ है पटेल ऑटो सर्विस सेन्‍टर | यहाँ पर ऑटो की सर्विस होती है ।

पिक के पिक्‍सल्‍स भी नहीं फट रहे हैं और काफी अच्‍छी फ़ोटो है ।

यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक स्‍वागत करता है ।

इस फोटो में आप देख सकते हो कि भगवान को लेके जाया जा रहा है ये विमान विमान बोले जाते है इनको यहां पर --

इस फ़ोटो में आप देख सकते हो कि एस.बी.आई. बैंक का लोगो लगा हुआ है साथ में भारतीय स्‍टेट बैंक जिसको हिन्‍दी में बोला जाता है इसकी मुख्‍य शाशा है ।

यहां पे देख सकते हो किले का डोर लगा हुआ है। किले का गेट है।

ऐं हो रहे है और इस फ़ोटो को अच्‍छे तरीके से लिया गया है ।

इस फ़ोटो में आप देख सकते हो दो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैैं और यहाँ पर एक नदी टाइप की बनी हुई हैं और यहाँ पर तीन मशीने रखी हुई हैं |

साथ में एक सीढियाँ दी गई है जिससे कि आप ऊपर चढ़ के ब्रिज के इस पार से उस पार जा सकते हो । नसीफ़ा जहांन यहाॅं पर कुछ लगा हुआ हैं ।

उनका एक रूम बना हुआ है साथ में सशं संस्‍कृत भाषा मा माता मम --

चार व्‍हील्‍स लगे हुए हैं | कुछ लोग खड़े हुए हैं | कुछ लोग अपना कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग अच्‍छे तरीके से अपना कार्य करते जा रहे हैं यही है --